दुकान का है और यह दुकान एक जनरल स्टोर की दुकान है जिसका नाम है।

यह दृश्य एक ए.टी.एम. बैंक का है और यह --

और कई मजदूर इकट्ठा हुए हैं और वे चिनाई का कार्य कर रहे हैं।

मार्केट का है और यह एक सी फूड मार्केट है जहां --

एंड साड़ी पॉलिशिंग सेंटर ।

यह दृश्य एक पार्क के अंदर का है। जहां पार्क के अंदर एक --